ये एक दुकान का चित्र हैं।

और पंखे और झूमर भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस क्षेत्र में एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा हैं।

और गोडाउन में पैक सामान रखा हुआ--

एक लड़का फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहा हैं और--

इस चित्र के अंदर जमीन पर कुछ टोकरियां रखी हुई नजर आ रही हैं।

एक घास का मैदान दिखाई दे रहा हैं।

जो गी एक जंगल सा नजर आ रहा हैं।

ये एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर लाइट भी लगी नज़र--

मिलता हुआ नज़र आ रहा है और--

ये सब लोग एक घास की जगह पर बैठे हुए हैं और आसपास--

दे रहे हैं और लोग आते जाते भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में पीले रंग से पुता हुआ एक बहुत बड़ा मंदिर नजर आ रहा हैं।

घर भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

पास में पीले रंग की एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं और--

दे रहे हैं और एक गाड़ी खड़ी हैं।

कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं और--

और इनके सामने कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

दो गुड्डा-गुड्डी भी लटके नजर आ रहे हैं।

बोगन विलिया पेड़ भी लगा नज़र आ रहा है और छोटे-छोटे घर भी --

लगी और रखी नजर आ रही हैं।

क्रेटों में आलू रखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

उसके आसपास बहुत सारी सब्जियां--